तस्वीर में आप देख सकते है की एक कार जोन नाम से दुकान है इससे ये प्रतीत होता है --

रथ पे कुछ लाइटे जल रही हैं और कुछ भगवन की मूर्ति रथ के ऊपर रखी गयी हैं।

तस्वीर में आप देख सकते है की लाइट के अंदर में और पंखा चल रहा है कुछ लोग हाथ जोड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं ।

तथा कुछ लोग पोस्टर के सामने बैठे हैं नीचे में फोटो खींचाने के लिए।

तस्वीर एक जगह की है जहां इकट्ठा खून दिया गया हैं और उस की पूरी मिटटी बहार निकाल दी गयी है ।